वहां पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कुछ आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसकी दीवार व्हाइट कलर की दिखाई दे रहीं--

यह पर बहु बहुत सारी गाड़ियां इधर उधर जाती हुई दिखाई दे रही है यहां पर एक आसमान भी दिखाई दे रहा है।

ये मेरे सामने एक कंपनी दिखाई दे रही है।

पिंजरा दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे पिंजरे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर दीवार व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है यहां पर दीवारों पर पिक्चर भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक जोतर भी दिखाई दे रह हैं।

फरिगे पिलर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि तिरंगे कलर के बने--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

सामने कुछ कंट्रक्शन का काम चल रा है यहां पर बहुत सारे रेत के टीले भी दिखाई दे रहे है।

सिंक दिखाई दे रहे हैं यहां पर लैट्रिन की दिखाई दे रही है।

ना मे कंट्रक्शन का काम दिखाई दे रा है।

मेरे सामने एक रेस्टोरेंट दिखाई दिखाई दे रहा है यहां यहां पर बहोत सारी कुर्सियां भी लगी हुए दिखाई दे रही है यहां पर कुछ बैलून भी लगे हुए दिखाई दे रहे --

आर्यन स्टोर दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक रैक दिखाई दे रहा है रैक के ऊपर एक ए_सी भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है रैक के पीछे एक दीवार का कलर रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

ऑफिस में बहोत सारे शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।